इनके प्रिपेरटॉर जगजीत सिंह खालसा हैं।

ये सिंगला आई हॉस्पिटल है।

इस शॉप में एक आदमी खड़ा है। उसके पीछे--

नीचे भी लोहे के एंकल्स पड़े हैं।

इनमेर्टर को ओपन करने के लिए--

पास ही कार के खड़ा है इसका--

ये होटल की तस्वीर है।